ये पिक्चर एक समुन्द्र की है जो रेतीली रेतीला भी है आसमान बिल्कुल साफ़ आसमान है।

ये पिच्चर होटल की है। कॉरिडोर है। वाईट कलर का पेन्ट है और इसमें कैमरा लगा हुआ है। दीवार पे एक पिच्चर है उसमें तीन औरतें हैं एक आदमी --

ये फोटो एक जंगल का है जिसमे बहुत लंबे-लंबे पेड़ है।

ये फोटो मे बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए है जो के पिंक और ब्लू कलर की पैकिंग मे है।

कांच के ग्लास है इसपुन रखे है फॉग रखे है मेनू रखा है।

यह फोटो एक ग्राउन्ड और एक बिल्डिंग का है इसके ग्राउन्ड के आस-पास नेट की बाउंड्री है।